इसके आर पार कोई भी मकान वगैरा नहीं है।

आदमी है लेकिन इनकी शकल नहीं दिखाई गई है।

इसमें लाइट भी रखी गई है और कुछ वॉचेस भी इसमें है।

वहां पर हॉस्पिटल का कलर क्रीम और रेड है और कुछ वॉचेस भी है फैन भी है।

कुछ बहुत सारा लिखा है और क्रीम कलर की दीवार है।

यहां पर ये क्रिसमस भी है और साइड से कुछ लोग भी है।